फोटो है और यह फोटो बहुत ही खूबसूरत एवं देखने लायक भी है।

इस फोटो में हमें कई बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं यह फोटो एक पार्क की है।

कुर्सियां एवं टेबल शामिल है।

इस फोटो में हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

इसमें बहोत सारी कोल्ड ड्रिंक है पानी की बोतल रखी हुई है।

आर_सी सैनी है यह बहोत बड़ा हॉस्पिटल दिख रहा है जो की रंग बिरंगे कलरों से पेंटेड भी है।

बैकरी के बाहर छोटे छोटे पेड़ पौधे है जो कि इस बैकरी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं।

इस फोटो में हम सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

जो कि बहुत ही खूबसूरत है और--